यहाँ साइड-साइड में घर भी नजर आ रहे है पेड़ पौधे भी नजर आ रहे है गाड़ी भी नजर आ रहा है।

ये सजावट बहुत नृत्य करने वाले है यहां का सजावट बहुत खूबसूरत है और यहां काफी बहुत अच्छे अच्छे लोग भी है।

--बहुत नजर बहुत अच्छे दिख रहे है यहाँ काफी लोग बैठे हुए है यहाँ कोई फंगक्सन हो रहा है।